मुझे इस तस्वीर में एक मूर्ति दिखाई दे रही है उसमें श्री गणेश जी कि दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत महिलायें खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ --

आजू बाजू मे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग प्रकार के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है और एक पुराना सा बैंक दिखाई दे रहा है।